आइसक्रीम को बनाया बनाया जाता है। सामने एक मोटर रखा है जिसमें एक इसके बगल में एक स्टील का मशीन रखा है और इसे बनाया जाता है। सामने एक बैटरी रखी गई है।

इस मॉल का नाम ऐ सुपरमार्केट है।